दो दुकानें दिख रही हैं तो एक साइड पे दाएं साइड पे उसपे सीढ़ी जाती हुई ऊपर है वहां आगे शीशा लगा हुआ है ऊपर बोर्ड भी लगा हुआ है ऐसा लग रहा है जैसे कोई कॉ कैफे है।

कपड़े की दुकान दिख रही है बाहर बहुत थेले हैं एक आदमी है एक आदमी खड़ा है एक आदमी बैठा है पीले रंग के कपड़े दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे--

एक नाई की दुकान है एक आदमी एक दूसरे आदमी बैठा हुआ है शीशे के आगे तो नाई उसका शेव कर रहा है यहां पे दो आदमी और खड़े हैं।

एक नदी है वहां से सारा सब्जा दिख रहा है एक दो नाई भी दिख रही है वहां पे सब्जा दिख रहा है।

सिलेब डाल रहे हैं यहां पे लोहे की रॉड लगी हुई बिछाए हैं और चारों तरफ से रॉड बिछाई गई है और एक दरवाजा देख वो खुला हुआ है वहां पे पूरा एरिया --

ये रेल्वे ट्रैक दिख रहा है।

उसमें खिड़कियां भी हैं वहां सीढ़ियां भी हैं अंदर जाने के लिए।

ये यहां पे बैठे हुए दो आदमी हैं तो उनके आगे एक टेबल है टेबल पे इनके यहां पे एक कंप्यूटर हैं और प्रिंटर भी है आगे वाले आदमी के पास कुछ फाइलें हैं पीछे इनकी चार्ट लगा हुआ है वहां पे खिड़की भी दिख रही है।

एक म अ दरख़्त भी है।

यहां पे एक सोफा है सोफे पे--

यहां से ये शाम का टाइम दिख रहा है सन तुलू हो रहा है सूरज तुलू हो रहा है और एक पिलर सा दिख रहा है और सब्जा दिख रहा है छोटी सी पहाड़ी दिख --

यहां पे बहुत सारे नट दिख रहे हैं बड़े-बड़े नट पीतल के और उसके पीछे कड़ी लोहे की स्टैंड भी खड़े हैं वहां पे--

दो सफेद कलर की गाड़ियां हैं बीच में दो पिलर हैं लोहे के उस एक पिलर पे डिब्बा है नीचे एक के नीचे ब्लू कलर का डिब्बा है दो गाड़ियां हैं एक उधर से मुख करते हुए एक इधर से और दोनों सफेद हैं।